यह एक झील हैं झील में बहुत सारा पानी भरा है।

यह एक भवानी लॉन्ड्री --

पेट्रोल डीजल डलाने आते है और--